घर हैं घर का कलर पिंक और व्हाइट हैं घर के अंदर एक पंखा लगा हुआ हैं।

और एक लड़का है जो ब्लैक कलर का शर्ट पहना हुआ है। दीवाल पर पंखा है जो वाइट कलर का है।

घर है घर का कलर येलो और रेड बॉर्डर है खिरकी है खिरकी का कलर ब्राउन है।

दुकान है दुकान का कलर व्हाइट है सीढ़ी का कलर ब्राउन है दरवाजे का कलर ब्राउन है टेबल है।

एक आदमी है जो खड़ा है ब्लू कलर का टी शर्ट और ग्रीन कलर का पैंट पहना हुआ है।

घर है घर का कलर येलो है रेड कलर का बॉर्डर है खिरकी है खिरकी का कलर वाइट है ब्लैक है।

कारपेट ग्रीन कलर का बिछाया हुआ है एक लड़का है व्हाइट कलर का टी शर्ट पहना हुआ है।

येल्लो कलर का कारपेट बिछा हुआ है एक आदमी है व्हाइट कलर का शर्ट पेहना हुआ है टेबल पंखा है पंखा का कलर ब्लैक है।

पार्क है पार्क में एक बोर्ड है ग्रीन कलर का जिसमें व्हाइट कलर से लिखा हुआ है।

फ्लावर है फ्लावर का कलर ऑरेंज है डब्बा है डब्बा का कलर वाइट है।

दुकान है दुकान का कलर रेड है बैलून है बैलून का कलर ब्लू और वाइट है।

पर्दा है पर्दे का कलर व्हाइट और येलो है फूल है फूल का कलर येलो है।